एक राशन का दुकान हैं जिसमें--

एक बहोत सुंदर गार्डन है जोकि--

यहीं रायपुर के मरीन ड्राइव का।

मैं एक इमेज को देख रहा हूँ।

इस इमेज में बहोत सारे पॉलिटिक्स हैं।

एक औरत और बहोत ज्यादा सुंदर है हर चीज--

जिसमें एक बहोत बड़ा कारखाना--

बहोत सारा सामान यहां पे उठाया जा रहा--

लेनोवो का और अलग अलग कंपनी का--

यह इमेज किसी रेलवे ट्रेन के अंदर से लिया गया--

सामने में लाइट्स लगी हुई है।

और बहोत ही अलग से बलून्स लगे हुए हैं।

इसमें आठ से नौ लेडिस हैं।